और हरे भरे दिखई दे रहे हैं कई सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आसमान देखाई दे रहे है आसमान नीला --